ये जो रेस्टुरेंट है उसका कलर वाइट है उसमे विंडोज भी लगी हुई है बिल्डिंग के ऊपर रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ है आएगा--

ये बैंक है यहां पे काफी सारे लोग कहेंग कुछ अंदर जा रहे है कुछ बाहर आ रहे है और कुछ बैठे हुए हेंग

यहां पर खूब सुंदर सा स्टेज बना हुआ है स्टेज के ऊपर दूल्हा बैठा है और उसके अगल बगल दो लोग बैठे है हुए है।